यह एक गार्डन का दृश्य है जहां क्रिकेट खेला जा रहा है।

और यहाँ कुछ पानी भी रखा हुआ है और यहाँ लाइनिंग लगी हुई है।

एक सर खड़े हैं जिन्होंने पीला कुर्ता पहना है वह माइक में कुछ बोल रहे हैं।

जहां मर मार्केट पेट्रोल पम्प --